लोहे के डंडे लगे हुए हैं।

और बिजली के बड़े-बड़े तार दिख रहे हैं।

और चाय बना रहा है।

यहां सड़क किनारे एक बड़ा सारा--

जहां पर गाड़ियां आ जा रही हैं।

एक सफेद गाड़ी खड़ी हुई है।

आस-पास दो बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ हैं।

जिसकी छत पर लाइटें लगी हुई हैं।

येह एक मोबाइल की दुकान है।

जमीन पर नीले रंग की चादर बिछी हुई है।

जीसके बाहर एक लड़का खड़ा हुआ है।

आसपास काफी पहाड़ दिख रही है।

पानी का तालाब काफी बड़ा है।

जहां पर बैठने के लिए काफी कुर्सियां--

काले रंग का बड़ा सारादरवाजा है।

ये एक पारक की तस्वीर है।

और क्यारी में लाल रंग के पेड़ लगे हैं।